एक रास्ता है | रास्ते के अगल बगल काफी सारे बसेस खड़े हुए हैं | बगल में एक मकान है | मकान सफेद कलर का है | उसके सामने एक और मकान है जो कलर का है अगल बगल काफी सारे पेड पौधे हैं जो काफी हरे भरे हैं |

यहाँ पे एक ग्राउंड है | ग्राउंड में काफी सारे लोग खड़े हैं पीछे से काफी सारे पेड़ पौधे हैं जो हरे भरे है बीच मे काफी सारा बड़ा लोहा का खंबा है| उसके बगल में काफी सारे लोग टीशर्ट पहने है जिसके पीछे कुछ लिखा हुआ है नीचे साइड काफी सारा घास जमा हुआ है।

यहाँ पर मंदिर है। मंदिर में काफी सारे फूल लगे हैं जो पिले कलर के हैं और ला है गुलाबी कलर के अगल-बगल पौधे हैं जो स हरे कलर के हैं। नीचे में काफी सारे लोग खड़े हुए हैं।

यहाँ पर काफी सारे लोग खड़े हुए हैं। ये इस के पीछे सामने एक ड्रम है। ड्रम लोहे के है। अगल-बगल काफी सारे पत्थर रखे हुए --

ये रास्ता है। रास्ते से उनके बगल में एक बाईक वाला है जो काले कलर का है। उसके बगल में एक इंसान है। उसके बगल में के लड़की है जो सलवार शूट पहनी --